जो की ढेर सारे गुब्बारों से सजा हुआ नजर--

सामने मुझे एक बहोत ही बड़ा सा भैंस का तबेला--

कुछ दुकाने वह कुछ घर भी मौजूद है।

इस पेट्रोल पंप का नाम मुझे इंडियन ऑइल नजर आ रहा--

इस तस्वीर पर सामने मुझे एक मोबाइल शॉप का बड़ा सा रैक बना हुआ--

इस तस्वीर पर एक बड़ा सा डैम नजर आ रहा है।

सामने मुझे एक बड़ा सा गाय का तबेला नजर आ रहा--

टेबल फैन सीलिंग फैन भी मौजूद है।

मशीनें रखी हुई नजर आ रही है।

सामने मुझे एक बड़ी सी नदी नजर--

सामने मुझे इस तस्वीर पर एक बड़ा सा डॅम --